ए-एयर एम्बुलेंस है यहाँ पे एयर एम्बुलेंस लगाया अच्छा है । यहाँ पे कंप्युटर दिखाई दे रहा है और उसके बाद एक पुलिस पुलिस कर्मी खड़ा है और इधर सी_सी कैमरा लगा हुआ है ।

सब्जियों का दुकान है यहां पे हरा-हरा सब्जी मिलती है और यहां पे बंधा कोवि तो नहीं है केला है हरा-हरा---

ई दु दु चार पाँच गो गाये है जो से पहाड़ पर चहर रहे है।

बच्चे सब कपड़ा है बहुत कपड़ा है छोटी बच्ची बड़ी बच्ची का भी है और यहाँ पे लटकाया हुआ है देखने मे बहुत सुंदर लगता है।